यह जिम क्लब है यहाँ लोग अपना बॉडी बनाने आते है फिटनेस बढ़ाने के लिए जिम करते है ये बोहत अच्छी फिटनेस के लिए यहाँ पे बोहत सारे लोग एक-एक जिम --

स्टेशन पे नल भी लगा हुआ है। हम्म यहाँ पे एक आदमी खड़े हो के पानी पी रहे है या हाथ धो रहे है।